यहां पर बैठने के लिए कुर्सीया और टेबल भी हैं।

यह चित्र एक नदी का हैं।

यह लड़की ड्राइंग कर रही है।

यहां पर लेडीज और लड़कियों के कपड़े मिलते है।

यहां एक अंकल फल बेचने के लिए बैठे हैं।

यह एक मोर का चित्र हैं।

यहां पर ये चार लड़कियों की फोटो है।

जिसका नाम मंगलम स्टोर्स है।

यहां पर बोटिंग हो रही है।

यहां एक रास्ते का चित्र है।

यह चित्र बहुत सुंदर दिख रहा है।

यहां लोग खाना खाने के लिए जाते है।